jmol application में measurements and labeling के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
* carboxylic acid और nitroalkane के models बनाना
* symbol के साथ model में परमाणुओं को label करना और number देना
* bond lengths bond angles और डाइहाइड्रल angles नापना
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि
* jmol application में आणविक models को कैसे बनायें और edit करें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
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
ubuntu os version 1204
jmol version 1222
java version 7
अब अच्छी तरह steps समझते हैं कि इस animation का प्रयोग करके carboxyl group को कैसे बनाया जाता है
एक उदाहरण की तरह हम ethanoic acid का model बनाएंगे जिसे सामान्यतः acetic acid भी कहते हैं
हम इथेन के model के साथ शुरू करेंगे
हमें methyl ग्रुप्स में से किसी एक को carboxyl group में बदलना है
उसी carbon परमाणु से जुड़े दो hydrogens को hydroxy group से बदलें
एक oxygen और एक carbon से जुड़े hydrogens मिटायें
carbonoxygen bond को double bond में बदलें
methyl group carboxyl group में बदला जाता है
देखें कि इथेन इथेनॉइक acid से बदल गया है
हम उपरोक्त steps का अनुसरण करके jmol application में ethanoic acid का model बनाएंगे
यह jmol panel पर इथेन का model है
अब methyl group को carboxyl group में बदलते हैं
modelkit menu से oxygen select करें
उसी carbon परमाणु से जुड़े hydrogens पर click करें
अब modelkit menu में delete atom विकल्प के सामने टिक करें
oxygen से जुड़े hydrogen को मिटायें
और carbon से जुड़े hydrogen को भी मिटायें
फिर carbon और oxygen के बीच एक double bond लगाते हैं
double modelkit menu में double विकल्प टिक करें
और carbon और oxygen जोड़ने वाले bond पर click करें
हमारे पास screen पर acetic acid का model है
structure को उपयुक्त बनाने के लिए energy minimization करें
हम nitro group बनाने के लिए समान युक्ति का अनुसरण करेंगे
यहाँ इथेन के model के साथ jmol panel है
अब इस अणु को nitroइथेन में बदलते हैं
modelkit menu पर click करें और nitrogen के सामने टिक करें
इथेन अणु में hydrogen परमाणु पर click करें
nitrogen परमाणु नीले गोले की तरह दिखता है
आगे हम nitrogen से जुड़े दो hydrogens को hydroxy group से बदलेंगे
modelkit menu पर click करें और oxygen के सामने टिक करें
फिर nitrogen से जुड़े hydrogens पर click करें
oxygen परमाणुओं से जुड़े hydrogens मिटायें
modelkit menu खोलें और delete atom के सामने टिक करें
oxygen परमाणुओं से जुड़े hydrogen पर click करें
अब हम nitrogen और oxygen परमाणु के बीच double bond लगाएंगे
modelkit menu में double विकल्प पर टिक करें
nitrogen और oxygen परमाणु को जोड़ने वाले bond पर click करें
अब panel पर nitroethane का model है
एक नियत कार्य में
* 1butanoic acid और ethylacetate के मॉडल्स बनायें
* energy minimization करके structure को उपयुक्त बनायें और
* image को सेव करें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
अब jmol panel पर वापस जाते हैं
यह screen पर 1butanoic acid का model है
अब model में परमाणुओं को label करना सीखते हैं
हम ऐसा element से सम्बंधित symbols के साथ करते हैं और उनको number देते हैं
display menu खोलें और scroll down menu से label select करें
element से सम्बंधित symbol के साथ सारे परमाणुओं को label करने के लिए symbol विकल्प select करें
name विकल्प symbol और number दोनों देगा
number विकल्प केवल परमाणुओं की numbering देगा
none विकल्प प्रयोग करके model से labels को हटा सकते हैं
हम उपरोक्त सभी रूपांतरण popअप menu प्रयोग करके भी कर सकते हैं
popअप menu खोलने के लिए panel पर right click करें और भिन्नभिन्न विकल्प जाँचें
अणु में कोई दो परमाणुओं के बीच की दूरी tools menu प्रयोग करके नापी जा सकती है
नापने से पहले modelkit menu खोलें और minimize पर click करें
अब energy minimization हो गया है और model सर्वाधिक स्थिर कान्फॉर्मेशन में है
अब tools menu पर click करें distance units select करें
आवश्यकता के अनुसार submenu से विकल्प select करें
उदाहरण के लिए मैं angstrom चुनूँगी
अतः bond lengths जो मैं नापती हूँ angstrom units में होंगी
rotate molecule icon पर click करें और cursor को panel पर लाएं
मैं 9 और 4 परमाणुओं के बीच की दूरी नापूंगी
पहले शुरुवाती परमाणु पर doubleclick करें जो कि परमाणु number 9 है
ठीक नापने के लिए अंतिम परमाणु पर doubleclick करें जो कि परमाणु number 4 है
अब screen पर bond length प्रदर्शित होती है
अब bond lengths की कुछ और नाप let हैं
double carbon और oxygen doublebond के बीच bondlength नापते हैं
अतः परमाणु number 5 पर doubleclick करें और cursor को परमाणु number 7 तक लाएं और इस पर doubleclick करें
उसी प्रकार अब carbon और oxygen single bond की दूरी नापते हैं
अतः परमाणु number 5 पर doubleclick करें और cursor को परमाणु number 6 तक लाएं और इस पर doubleclick करें
हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सारी bond lengths प्रदर्शित होती हैं
हम model में bondangles और डाइहाइड्रल angles को भी नाप सकते हैं
उदाहरण के लिए हम परमाणुओं 94 और 1 के बीच bond angle नापेंगे
परमाणु number 9 पर doubleclick करें और फिर परमाणु number 4 पर click करें
angle की ठीक नाप लेने के लिए परमाणु number 1 पर doubleclick करें
हम देख सकते हैं bondangle screen पर प्रदर्शित होता है
अब माना परमाणु 15 और 6 के बीच bondangle नापते हैं
परमाणु 1 पर double click करें परमाणु 5 पर click करें और अंततः परमाणु number 6 पर doubleclick करें
torsional या dihedral angle की नाप में चार परमाणु प्रयुक्त होते हैं
अतः हम परमाणु 841 और 2 चुनेंगे
dihedral angle की नाप के लिए पहले परमाणु number 8 पर doubleclick करें
परमाणु number 4 पर click करें और फिर परमाणु number 1 पर
and में dihedral angle की ठीक नाप लेने के लिए परमाणु number 2 पर doubleclick करें
हम देख सकते हैं dihedral angle की नाप screen पर प्रदर्शित होती है
सभी ली गयी नापों की values सारणी की form में देखी जा सकती हैं
tool bar में click atom to measure distances icon पर click करें
panel पर measurements dialog box खुलता है
यह अभी तक की सभी नापों की सूची रखता है
अब हम image सेव कर सकते हैं और application exit करें
इसको सारांशित करते हैं:
इस tutorial में हमने निम्न सीखा
* carboxylic acid और nitroalkane के models बनाना
* element के symbol से model में परमाणुओं को label करना और number देना
* bond lengths bond angles और डाइहाइड्रल angles नापना
एक नियत कार्य में
* single double और triple bonds के साथ अणुओं के models बनायें
* carbon परमाणुओं के बीच bond lengths नापें
* और उनकी तुलना करें
इस url पर उपलब्ध video देखें